implementing proportional controller on sbhs remotely पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि proportional controller gain की गणना करने के लिए zieglernichols tuning method का उपयोग करना
एक proportional controller को डिज़ाइन करने के लिए step test code रूपांतरित करना
sbhs पर यह proportional controller कार्यान्वित करना
निश्चित कर लें कि आपके कंप्यूटर पर scilab संस्थापित हो
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले यह भी निश्चित कर लें कि आपके पास इन्टरनेट कनेक्टिविटी हो
यह ट्यूटोरियल मैं windows 7 32bit operating system पर रेकॉर्ड कर रही हूँ
पूर्वावश्यकता में using sbhs virtual labs on windows os पर ट्यूटोरियल देखें
यह ट्यूटोरियल स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध है
यह आपको sbhs पर दूर से बुनियादी step test परिक्षण करने के बारे में सीखाएगा
आपको pid ट्यूनिंग की बुनियादी जानकारी की भी ज़रुरत है
आपके पास step test experiment code folder उपलब्ध होना चाहिए
आपके पास step test experiment data file भी होनी चाहिए
यदि नहीं तो आपको step test परिक्षण दोबारा करने की और नयी डेटा फाइल बनाने की सलाह दी जाती है
मेरी मशीन पर डेटा फाइल scilab_codes_windows फोल्डर >> step test फोल्डर >> logs फोल्डर में है
यहाँ मेरे यूज़रनेम a फोल्डर है और यहाँ मेरी डेटा फाइल है
अब वेबसाइट से analysis code डाउनलोड करते हैं
वेब ब्राउज़र खोलें और sbhs dot os hyphen hardware dot in वेबसाइट पर जाएँ
बायीं तरफ downloads पर क्लिक करें
sbhs analysis code फाइल को डाउनलोड करें और इसे डेस्कटॉप पर सेव करें
यह यहाँ है! डाउनलोड की हुई फाइल zip फॉर्मेट में होगी
राइटक्लिक करें और zip फाइल कि विषय वस्तु को एक्सट्रैक्ट करें
scilab codes analysis नामक एक फोल्डर बनेगा
इस फोल्डर को खोलें
step analysis फोल्डर पर जाएँ और इसे खोलें
step analysis फोल्डर में कुछ फ़ोल्डर्स होंगे
kp tau order1 फोल्डर में पहले बनाई हुई डेटा फाइल को कॉपीपेस्ट करें
scilab फाइल firstorder पर डबल क्लिक करें
यह स्वतः ही scilab लॉन्च करेगा और फाइल को scilab editor में भी खोलेगा
अगर यह फाइल नहीं खोलता तो file मेन्यु पर और फिर open a file पर क्लिक करें
firstorder फाइल चुनें और open पर क्लिक करें
वेरिएबल filename पर जाएँ और अपने डेटा फाइल के फाइलनेम में इसकी वैल्यू बदलें
स्पेलिंग की गलती से बचने के लिए मैं फाइलनाम को कॉपीपेस्ट करुँगी
txt एक्सटेंशन रखें
इस scilab कोड को सेव और निष्पादित करें
अगर डेटा फाइल विकृत नहीं हुई है और कोई गलती नहीं है तो प्लाट विंडो खुलेगी
यह प्लाट विंडो दो वक्र रखती है sbhs temperature plot जो noise रखता है और sbhs first order model का आउटपुट जो एक चिकना वक्र है
यह कोड मूलतः डेटा फाइल उपयोग करके first order transfer function को फिट रखने का काम करता है
टाइम कांस्टेंट tau और गेन kp की वैल्यूज़ ऊपर दिखती हैं
इस ट्यूटोरियल में हम first order transfer function उपयोग नहीं करेंगे
हम केवल sbhs आउटपुट का प्लाट उपयोग करेंगे
scilab एडिटर पर जाएँ
plot2d of t comma y underscore prediction लाइन पर जाएँ
हम prediction आउटपुट को प्लाट पर नहीं दिखाना चाहते हैं
लाइन की शुरुआत में दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाकर इस लाइन को टिपण्णी करें
scilab कोड को सेव और निष्पादित करें
प्लाट विंडो पर जाएँ
ध्यान दें प्लाट विंडो अब केवल sbhs temperature plot रखती है
इस इमेज को सेव करने के लिए file मेन्यु पर क्ल्लिक करें
फिर export to विकल्प चुनें
इमेज फाइल को एक नाम दें मैं sbhsplot दूंगी
files of type के लिए ड्रापडाउन मेन्यु पर क्लिक करें और png चुनें
डायरेक्टरी चुनें जहाँ आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं
मैं डेस्कटॉप चुनूँगी और सेव कर क्लिक करुँगी
अब खोलें और देखें कि क्या डेस्कटॉप पर इमेज फाइल बन गयी है
यह यहाँ है!
इमेज विंडो बंद करें
अब मैं स्लाइड्स पर जाती हूँ
अब zieglernichols tuning method उपयोग करके proportional gain कि गणना करते हैं
pid पैरामीटर्स की गणना के लिए zieglernichols द्वारा दिए गए दो ट्यूनिंग नियम हैं ये reaction curve मेथड और instability मेथड हैं
हम reaction curve मेथड देखेंगे
इस मेथड में एक step input सिस्टम को दिया जाता है और इसका आउटपुट समय के साथ देखा जाता है
कोई भी प्रायोगिक सिस्टम step input पर एक्सपोनेंशियली यानि चरघातांकी रूप से प्रतिक्रिया देगा
inflection बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जाती है
मतलब जब वक्र convex से concave में बदलता है
dead time और time constant की गणना time एक्सिस से की जाती है
यह इस चित्र में स्पष्ट किया जाता है यह स्पर्श रेखा है जो inflection बिंदु पर बनाई जाती है
k सिस्टम का gain है
l dead time है और
t time constant है
इसे sbhs आउटपुट फिगर पर दोहराएँ जो डेस्कटॉप पर सेव किया गया है
मैंने यह पहले ही कर लिया है
अब मैं यह फाइल खोलती हूँ
मैंने paint brush उपयोग किया है जो विंडोज़ पर डिफ़ॉल्ट image editing tool है
मुझे वैल्यूज़ gain इक्वल टू 27 dead time इक्वल टू 1 सेकेंड और time constant इक्वल टू 50 सेकेंड मिल गयी हैं
ध्यान दें ये सभी अनुमानित वैल्यूज़ है
वैल्यूज़ शुद्धता पर निर्भर करती हैं जिसके साथ आप inflection point पर स्पर्शरेखा बनाते हैं
अपेक्षित वैल्यूज़ मिलने के बाद आप proportional gain की वैल्यू की गणना के लिए zieglernichols द्वारा दी गयी सूची पर जाएँ
proportional controller के लिए हमें केवल proportional gain की वैल्यू की गणना करनी है
मेरी स्थिति में proportional gain की वैल्यू 18 आती है
अब देखते हैं कि sbhs पर proportional controller कैसे लागू करते हैं
इसके लिए हम स्टेप टेस्ट कोड रूपांतरित करेंगे
उस फोल्डर पर जाएँ जहाँ आपका स्टेप टेस्ट कोड है
यह यहाँ है इस फोल्डर की एक कॉपी बनाएं
इस फोल्डर का नाम बदलकर proportional करें और इसे खोलें
stepc फाइल का नाम बदलकर proportional करें
steptest dot sci फाइल का नाम बदलकर proportional करें
steptest dot xcos फाइल का नाम बदलकर proportional करें
अगर scilab पहले से रन हो रहा है तो बंद करें
proportional dot sce फाइल पर डबलक्लिक करें
यह अपने आप ही scilab आरम्भ करना चाहिए और फाइल को scilab एडिटर में भी खोलना चाहिए
अगर यह फाइल नहीं खोलता तो file मेन्यु पर और फिर open a file पर क्लिक करें
proportional फाइल चुनें और open पर क्लिक करें
steptestsci फाइल के बजाए proportionalsci फाइल को निष्पादित करने के लिए exec कमांड को बदलें
steptestxcos फाइल के बजाए proportionalxcos फाइल को निष्पादित करने के लिए xcos कमांड को बदलें
इस file को सेव करें
file मेन्यु पर क्लिक करें और open चुनें
proportionalsci फाइल चुनें और open पर क्लिक करें
फंक्शन का नाम steptest से बदलकर proportional करें
proportional फंक्शन इनपुट से इनपुट वेरिएबल heat को डिलीट करें और टाइप करें setpoint
अगली लाइन में टाइप करें global एक स्पेस छोड़ें और फिर टाइप करें temp और एंटर दबाएँ
अगली लाइन में टाइप करें err equal to setpoint minus temp
अंत में एक सेमीकोलन लगाएँ और एंटर दबाएँ
अगली लाइन में तय करें heat equal to 18 गुणा err अंत में एक सेमीकोलन लगाएँ
यहाँ मेरे sbhs के लिए proportional gain की वैल्यू 18 है
आपने जो अपने sbhs के लिए गणना की है उसके अनुसार आप इसे बदल भी सकते हैं
इसके फंक्शन कॉल में plotting फंक्शन के इनपुट वेरिएबल में setpoint जोड़ें
यह करने के लिए temp के बाद स्पेस दें और टाइप करें setpoint
इस file को सेव करें
scilab console पर जाएँ टाइप करें xcos और एंटर दबाएँ
xcos विंडो खुलेगी
palette विंडो बंद करें
xcos untitled विंडो पर file मेन्यु पर क्लिक करें और open चुनें
proportional डायरेक्टरी ब्राउज़ करें
proportionalxcos चुनें और open पर क्लिक करें
xcos फाइल खुलेगी
heat input in percentage लेबल पर डबलक्लिक करें
इसे डिलीट करें और टाइप करें setpoint
लेबल को सेव करने के लिए xcos विंडो पर कहीं भी एक बार क्लिक करें
इसकी properties विंडो खोलने के लिए step input ब्लॉक पर डबलक्लिक करें
initial value को 30 और final value को 40 करें
step time को 300 रखें ok पर क्लिक करें
function ब्लॉक पर डबलक्लिक करें एक विंडो दिखेगी ok पर क्लिक करें
एक अन्य विंडो दिखेगी
यहाँ इस xcos ब्लॉक द्वारा कॉल होने वाले फंक्शन नाम को प्रविष्ट करने का विकल्प है
फंक्शन नाम step test से बदलकर proportional करें ok पर क्लिक करें
एक अन्य विंडो खुलेगी
function ब्लॉक के कॉन्फ़िग्रेशन को समाप्त करने के लिए तीन बार ok पर क्लिक करते रहें
xcos डायग्राम को सेव करके बंद करें
xcos untitled विंडो भी बंद करें
वेब ब्राउज़र पर जाएँ
बायीं तरफ virtual labs पर क्लिक करें
अपने पंजीकृत यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें slot book करें
proportional फोल्डर पर जाएँ run फाइल पर डबलक्लिक करें
यह sbhs client application खोलेगा
अपने यूज़रनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें निश्चित कर लें कि आप बुक किये हुए slot टाइम में लॉग इन कर रहे हों
ready to execute scilab code मैसेज देखें
scilab console पर जाएँ
टाइप करें: get d space dot dot slash common files एंटर दबाएँ
scilab editor पर जाएँ proportionalsce फाइल को निष्पादित करें
यदि नेटवर्क ठीक है तो यह proportional controller xcos डायग्राम के साथ स्वतः ही xcos विंडो खोलेगा
xcos डायग्राम को निष्पादित करें और एक plot window देखें
प्लॉट विंडो heat fan temperature तीन प्लॉट्स रखेगी
setpoint भी temperature ग्राफ पर प्लॉट किया जायेगा
देखें कि temperature की setpoint वैल्यू प्राप्त करने के लिए proportional controller heat की वैल्यू की गणना करता है
setpoint में step change होने के बाद क्या होता है देखने के लिए इस परीक्षण को लम्बे समय तक रन करें
अब मैं इस रेकॉर्डिंग को रोकूंगी जब तक परीक्षण पर्याप्त समय के लिए निष्पादित न हो जाएँ
आप देख सकते हैं कि proportional controller ने setpoint में बदलाव पर प्रतिक्रिया दी है
आप देख सकते हैं कि proportional controller में स्वाभाविक रूप से offset की विशेषता है
एक proportional controller हमेशा सेटपॉइंट वैल्यू और वास्तविक वैल्यू के बीच एक offset रखेगा
अब इसे सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा sbhs के लिए proportional controller gain की गणना करने के लिए zieglernichols ट्यूनिंग मेथड उपयोग करना
proportional controller डिज़ाइन करने के लिए स्टेप टेस्ट कोड रूपांतरित करना
sbhs पर डिज़ाइन किये हुए proportional controller को लागू करना
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए contact at spokentutorialorg पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी